लेविल लिखा हुआ है और एक शॉप के सामने एक रेड कलर की स्कूटी खड़ी है।

और इसके सामने एक जीना है।

यह एक हेयर कटिंग की दुकान है। यहां पर न्यू डिजाइनर की --